छोटे-छोटे फूल पौधे लगे दिखाई दे रहे है जो फूले हुए है वहाँ पे बहुत से आदमी आना जाना कर रहे है।

यह सामने कुछ मूर्ति दिखाई दे रही है। जहाँ पंडाल लगा हुआ है और कुछ सजावट हुई है और वहाँ दो --

और लेडीज जेंट्स अपने दिख रहे है और उपर में कुछ साइड में दिखाई दे रही है और ये रात का समय है। आसमान --

यह ग्राउंड दिख रहा है जहाँ एक व्यक्ति लेटे हुए है और दूसरा व्यक्ति वह उसके पैर को साइड पे मोड़ते हुए दिखाई दे रहा है।

यह एक सरकारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहाँ बाहर में कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं और अंदर कुछ बाउंड्री दीवार बनी हुई है और एक नीम का बड़ा सा ब्रछ भी दिखाई दे रहा है।